ऊपर की तरफ एक ज़िगज़ैग पैथ में लगी हुए दिखाई दे रही है जो देख--

आगे की तरफ एक बड़ा सा गेट लगाया हुआ मैं देख पा रही--

यहां मैं एक बैंक का दृश्य देख पा रही हूं बैंक के नीचे कुछ दुकानें में भी बनी हुई दिखाई दे रही हैं यह बैंक दूसरे मंजिले पे बना है।

जो देखने में बहोत ही खूबसूरत लग रही है।

आगे की तरफ में मैं बहोत ज्यादा लोगों को भी देख पा रही हूं।